एक पेट्रोलियम है पेट्रोलियम है कुछ व्यक्ति पेट्रोल भरवा रहे है।

यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो कि बैग लिए हुए है सिर पर बोरी रखे हुए हैं काफी मात्रा मे मोटरसाइकिल रखे हुए हैं एक बिल्डिंग है एक पिरतिक--

महिला है और यहाँ पे जो पेंटिंग है एक मेहँदी डिज़ाइनर होता है उस तरह का है यहाँ।

जिसरो मनपसंद कलर की खरीद सकते --

और बाहनो को निकलने के लिए नीं व चीना लगा हुआ है उसके यहाँ सीधा सैंपल --